ये राडा है जिसमें राडा लगे हुए हैं।

ये ट्रेवल बस है जहां पे लोग बैठते हैं एक--

और पानी स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है यहां पर स्लाइड से और पीछे से एक दीवार दिखाई दे रही है जो ईंटों की बनी हुई है।

और बिल्डिंग के पीछे भी कई सारे हरे कलर के झाड़ा दिखाई दे रहे हैं।

ये एक किला है ये भी जिसमें घड़ी लगाई हुई दे रही है और पीछे से एक मीनार दिख रहा है।

आश्रम दिख रहा है जहां पर एक अच्छी सी बिल्डिंग है।

एक रस्सी बांधी हुई है और एक एक थोड़ा झाड़ भी दिखाई दे रहा है इसमें--